यहाँ पे एक रोड है नीचे में और जो की रिक्सा वाला है और एक मोटरबाइक है।

यहाँ पे एक ड्रम हैंजो कि ब्राउन और वाइट कलर का धागा से बंधा हुआ है एक आदमी है जो की----

यहां पे एक जू है। जू में बहुत सारे जानवर है और जानवर का कलर रेड है और ब्राउन है।

कुछ हिरन टाइप के है पीछे बहुत सारा बिल्डिंग है जो बड़े-बड़े है नीचे मे घास है जो कि ग्रीन कलर का है पेड़-पौधे है जो उम जिसका पत्ती का रंग हरा है।

यहाँ पे एक ग्राउंड है जो कि बोहोत बरा है। एक बिजली का खंबा लगा हुआ है जो कि सिल्वर कलर का है उसमें बोहोत सारा लाइटे लगी हुई है। पीछे बोहोत बरा - बरा पेड़ है ।

टाइल्स लगे हुए हैं बॉर्डर पे और गोल्डन कलर का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर मे एक नीम का पेड़ है और कुछ खम एक खंभा है जो की बिजली का खंभा है और ऊपर मे पूरा नीला आसमान है।

एक बगल में गेट लगा है नीचे में एक ब्लू कलर का मशीन है कुछ खंभे है एक स्टैचू है जो कि गोल्डन कलर का है छोटी-छोटी घास है ऊपर में आसमान है।

कदवा का पेड़ ऊपर में पूरा आसमान है। यहाँ पे एक बिजली का खंभा है और बिजली का वायर है और बड़े-बड़े पेड़ है कुछ छोटे-छोटे कंक्रीट से बना मकान है।

यहां पे बहुत सारा सड़ा सब्ज़ी रखा हुआ है जिसमे टमाटर है पके-पके कुछ कच्चे टमाटर है।

भिंडी है जो कि हरा रंग का भिंडी है। मिर्च है वो भी हरा रंग का है ओनियन है और खीरा है और कुछ वेट जोखने वाला मशीन है एक बोरा है।

कपड़ा है जो की रेड कलर पिंक कलर ब्लू कलर में है कुछ बल्ब जल रहे हैं ऊपर वाइट कलर की दीवाल है और रड --